यहां पर खिड़कियों से रोशनी आती हुई दिखाई दे रही है यहां कुछ कारपेट भी हैं।

यहां पर कुछ खिड़कियां बनी हुई दिखाई दे रही है।

यहां पर दो आदमी आपस में बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक आदमी है जो --

ये एक रेस्टोरेंट की तस्वीर दिखाई दे रही है।

ये एक रेलवे स्टेशन की तस्वीर दिखाई दे रही है जहां पर एक ट्रेन खड़ी हुई नजर आ रही है।

और कुछ लोग ये जो यहां लगी हुई कुर्सियों पर बैठे हुए भी नजर आ रहे हैं और कुछ लोग ट्रेन में चढ़ रहे हैं।

ये एक स्टेज की तस्वीर दिखाई दे रही है।

जो कि किसी वाटर पार्क का गार्डन दिखाई दे रहा है।

बच्चे को झूले पे झूलता हुआ दिखाई दे रहा है और पीछे स्लाइड में कुछ बच्चे बैठे हैं।

ये एक ऐसी तस्वीर है जिसमे दो काले कलर की बड़ी बड़ी टेबले रखी हुई दिखाई दे रही है।